यहाँ पर एक मार्केट टाइप बना हुआ हैं यहाँ पे सलून वगेरा बने हुए हैं गर्ल्स पार्लर बना हैं एक साइड में एक साइड में बॉयस सलून हैं एंड बाइक खड़ी हुई हैं एक्टिवा खड़ी हुई हैं वाइट --

एंड एक टी. वी. लगा हुआ हैं एंड एक बॉय हैं जो कि मिरर में दिख रहा हैं वो टी. वी. देख रहा हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के वॉश बेसिन बना हुआ हैं वो इधर साइड में--

एंड यहाँ पे एम् फोटो कॉपी की मशीन रखी हुई हैं वाइट क्रीम क्रीम कलर की एंड यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स रखा हैं निचे भी कूलर टाइप का कुछ रखा हुआ हैं रेड लेफ्ट साइड में एंड आस-पास मे बुके रखी हैं अलमारियों में बहुत सारी अलग-अलग तरह--

यहाँ पर एक पत्थरो दिवार हुई हैं एंड उसके ऊपर बहुत सारे स्टेचु वगेरा बने हुए हैं गर्ल्स वगेरा बनी हुई हैं मूर्ति बनी हुई हैं डांस वगेरा कर रहे हैं वहाँ कुछ खड़ी हुई हैं कुछ स्टेप कर रही हैं कुछ अलग स्टेप कर रही हैं।

वो रेड कलर की और वो एक बोई अंकल बैठे हुए है उन्होंने ग्रीन कलर की अ टीशर्ट पेहनी हुई है सामने बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे है ।

बुक शॉप बनी हुई है बड़ी सी एक लैडी बैठी हुई है पिंक कलर के दुपट्टे मे चेयर --

इन ऑटो के सामने उधर एक व्हाइट कलर का घर टाइप बना हुआ है बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिए हुए है पूरे में घास वगैरह पड़ी हुई है काटन टाइप में दिया हुआ है रेत के आसपास में और भी रेत पड़ी हुई है बड़ी बहुत सारी --

यहाँ एक धन्यवाद थैंक्यू अन्नपूर्णा के नाम से एक ज-रेलवे स्टेशन बना हुआ है शायद जंक्शन इन यहाँ पे आस पास में बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं एक वाइट कलर का टेंपो जा रहा है एक ब्लैक कलर की वो बनी हुई है ऑटो खड़े हुए हैं।